फूल भी एक तालाब भी दिखता हुआ नजर आ रहा है।

इस स्कूल कि मेन गेट जो है और लोहे की बनी हुई है जो कि लाल रंग से है।

और स्कैनर जो है वह फोन पे का रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य से पता चल रहा है कि यह दृश्य या दिन का है और यहां पर एक घर निर्माण का कार्य जारी किया जा रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ है जिसमें कुर्स ने एक सोफा बन लगा हुआ है।

यहां इस यहां पे मुझे एक सोफा दिख रहा है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि ब्लू ब्लू रंग का शर्ट पहने हुए है।

इस तस्वीर से मुझे एक फूड रेस्टोरेंट दिख रहा है।